झरने का है और झरना काफ़ी उचाई से बहता हुआ दिखाई दे रहा है और झरना --

और अनेक मशीने लगा रखी है और पेट्रोल पंप के उपर अनेक साधन खड़े है।